ओ बी ए एल ग्लोबल टाइपिंग सेंटर लिखा हुआ।

फोटो में एक पानी का--

लड़का पत्थर को हाथ लगाए अपना फोटो खिंचवा रहा--